यहां हम देख सकते हैं कि कुछ डमी मोबाइल भी पड़े हुए हैं।

यहां हम देख सकते है की यह एक करयाने की दुकान है।

और एक चॉकलेट का डिब्बा रखा हुआ है जिसमे काफी सारी चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं नीचे हम की बोतलें देख सकते हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक फर्नीचर हाउस है यहां पर तरह तरह के सोफों का डिजाइन पड़ा हुआ है।

यह हम देख सकते हैं कि यह एक खेत का दृश्य है यहां पर हरे भरे घास उगा हुआ है एक दो यहां पर गमले पड़े हुए हैं।

और यहां पर एक पानी का बड़ा सा पाइप पड़ा हुआ हम देख सकते हैं।

यहां पर एक आदमी जिसने फेशियल करवाया है।

यहां पर एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है।

लगे हुए देख सकते हैं और साइडों में छोटे छोटे पेड़ हैं यह एक पारक की तरह बनाया गया है।

और इसके बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है जोकि टैक्सी है।

और इसके शीशों पर कारों के पोस्टर लगाए गए हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि किसी के घर का लेंटर बन रहा है।

जैसे नारियल के पेड़ होते हैं इतने बड़े बड़े पेड़ यहां लगे हुए हैं।

कुछ पत्ते हमें यहां पर खराब दिख रहे हैं।

और काफी सारी गाड़ियां भी यहां खड़ी हुई हैं।

बेड पर लाइट पिंक कलर की चादर बिछी है और ब्लैंकेट रखा हुआ है।